और एक हम्म्म्म बाइक जाते हुए नजर आ रही है।

और इसमे कांच भी दिखाई दे रहे हैं।

और ऑटो भी दिखाई दे रहै है पास मे चाय का नुक्कड़ वाला भी दिखाई दे रहा है जिस पे लोग चाय पीने के लिए बेठे हुवे भी दिखाई दे रहै है

इस के पास एक रोड दिखाई दे रही है।

येह फोटो किसी पर्वत पहाड़ की है जिसमे पूरा पर्वत हरा दिखाई दे रहा है।

है और कुछ दिखाई दे रही है और आगे की साइड पूल जैसा दिखाई दे रहा है जो की रोड है वो फिर भी दिखाई दे रहे है जो की तालाब के उस पार है।

यह फोटो किसी मॉल की है जिसमें काफी सारे ट्रोलियाँ खड़ी हुई नजर आ रही है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि चारों तरफ से इसको ढके हुए है और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो शादी की है जिसमें दूल्हा-दुल्हन को जोड़े में बांधा जा रहा है इसमें पंडित जी दिखाई दे रहें हैं और पीछे दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदार दिखाई दे रहें हैं।